घर बा पीला व्हाइट कलर में लाल कई आदमी मास्क लगाए सब सीड़ी उड़ी --

पर्दा लगल बा गुलाबी नीला कलर के लोहा लगल उपरा काजनी का इ लाल काला तीन-तीन ठो मोबाइल --